यह एक बस है जिसके सामने बस चालक खड़ा हुआ है।

यह स्तना सुशील लिबर्टी है यह एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है।

आप एक जीप सफारी में जा रही है।

दवाइयों से बीमारियों को दूर किया जा सकता हैं।